पूरा इंडियन लुक ले रहा ले रखा है पीछे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं अलग-अलग कलर्स के और--

उसके ऊपर पोस्टर लगे हैं पोस्ट ऑफिस के राइट साइड पोस्ट ऑफिस का डब्बा लगा है कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं।